पार्क बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है।

यह दिखने में काफी खूबसूरत है और बहोत सारी झाड़ियां भी लगी हुई हैं।

लड़के हैं जो इधर --